यहाँ पर एक बैंक दिखाई दे रही है बैंक के सामने एक रिक्शा थाड़ा हुआ है उसमे कोई नहीं दिखाई दे रहा है।

एक रिक्से में एक आदमी चला रहा हुआ है रिक्सावला एक --

बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं। स्कूटी खड़ी हुई है साइकिल खड़ी --

कुछ चुनरिया लाला लाला ओढ़े हुए हैं। केले रखे हुए --

कुछ मगे नीचे जमे हुए हैं।

एक लड़की दो चोटी बांधे हुए आँखों में चस्मा लगाया हुआ है।

गडे एसा लग रहा है जैसे की पानी गिरा हो गढ़ो में --

हूँम बैठे कुछ बत्रा रहे हैं कुछ --